तस्वीर में एक आदमी मिरर सेल्फी लेते हुए दिख रहा है और उसका एक हाथ जिम के वेट लिफ्टिंग इक्विपमेंट पर रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक आर्मी कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ा है।

इस तस्वीर में लगभग चार लोग नजर आ रहे है।

एक आर्मी एक बड़े पत्थर पर बैठा है उसने ब्लैक शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स पेहने हैं।

स तस्वीर में एक आदमी खड़ा है दोनों हाथ अपनी डार्क ग्रे हुड्डी के पॉकेट में डाला हुआ है।

और उसने लाइट ब्लू जींस पहनी हुई है पीछे का एनवायरमेंट एक एक कैफे जैसा लग रहा है।

जहां एक व्यक्ति रिसेप्शन पर खड़ा है।

बिल्डिंग पर सदर हॉस्पिटल गोपालगंज का नाम क्लियरली लिखा हुआ है बाहर एक सफेद कार करी है।

और लोग इधर उधर चल रहे हैं साथ ही बहुत सारे मोटरसाइकल्स भी नजर आ रही है।

पीछे पेड़ और एक खुला मैदान भी नजर आ रहा है।

लगता है ये लोग अपनी दुकान में मछली या मांस बेच रहे हैं।

पूरा दृश्या व्यस्त बाजार का लग रहा है।

इस तस्वीर में एक सड़क पर स्टॉल दिख रहा है जो शायद चाय का है।

इस तस्वीर में एक आदमी और एक बच्चा एक वॉटरफॉल या डैम के पास खड़े हैं।

लगता है कि ये पिता और बेटा है आदमी ने लाल स्वेटर पहना है और उसके बच्चे ने प्रिंटेड टी शर्ट ।

बिल्डिंग का एंट्रेंस लाल रंग का है और वॉल पर ए_टी_एम लिखा हुआ दिख रहा है।

दीवारे लाल रंग की है जो बहोत सुंदर है।

दाएं तरफ एक सीढ़ी है जिसमें लाइट कलर स्टेप्स हैं।

आगे एक टीचर कि टेबल भी रखी हैं।

खिड़कियां है जहां से रोशनी आ रही है।

आगे कुछ मोटरसाइकिल्स खरी या गिरी हुई है और लोग खरे या काम करते दिख रहे हैं।

लगता है कि ये कोई ए_टी_एम की जगह है।

वे एक पतली दरार में खरे हैं।

इस तस्वीर में एक लड़का पिला स्वेटर और गुलाबी जींस पहने खड़ा है और फोटो के लिए पोज कर रहा है।

और से पता चल रहा है की ये कोई प्लांट कंजर्वेटरी है।

लड़की के अगर लड़की के आगे एक वाटर फाउंटेन भी दिखाई दे रही है।

लगता है ये कोई मश हूर व्यू प्वाइंट या रॉक फॉर्मेशन है जहां लोग तस्वीर खींचने आते हैं।

तस्वीर मे कुछ बच्चे फैंसी कपड़ो मे दिख रहे है जैसे पिंक सफेद और लाल--

इस तस्वीर में एक सरक का एक दिशा दिख रहा है।

जहां कुछ लोग स्टेट बैंक के ए_टी_एम के पास खड़े हैं।

इस तस्वीर में दो लोग बाहर बैठे हैं और --

पीछे एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

जो लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया एस_बी_आई की ब्रांच है।

उसने ग्रे जैकेट डार्क ब्लू जींस डार्क ब्लू शूज और ए टोपी पहनी हुई है।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

वो एक बड़ी रॉक फॉर्मेशन के नीचे खड़ा है।

और अपनी एक हाथ से पत्थर को छू रहा है जो लगता है जैसे वो रॉ क्लाईमिंग या रिबलिंग जिससे आउटडोर एडवेंचर्स पे है।

इस तस्वीर में एक आदमी एक पत्थर पर बैठा है लगता है ये झील के किनारे हैं।

जो उस आरमी की दुकान का नाम हो सकता है।

इस तस्वीर में टोटल नाइन लोग देख रहे हैं लगता है ये किसी फंक्शन या इवेंट का दृश्य है।

और जिसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

इस तस्वीर में समारोह दिख रहा है जहां लोग बैठे हुए हैं बीच में एक मूर्ति लगी हुई है जो पोडियम पर रखी गई है।

उसने धूल्हा हुआ लाल रंग का टी शर्ट पहेना है लगता है ये सेल्फी उसने जिम में ली है।

लगता है ये सड़क के कोने पर खड़ा है पीछे पेड़ नजर आ रहे हैं।

उसके पास एक नीली रंग की बस खड़ी है जिसमें एस ए एम इ इ आर समीर लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक आदमी दिख रहा है जो सफेद टी शर्ट जिसमें ग्रे प्रिंट्स है और ब्राउन पैंट्स पहनी है।

यह आर्मी वेट उठा रहा है शायद डेडली कर रहा है ये जिम मे है।

पूरा दृश्य एक व्यस्त बैंक के बाहर का लग रहा है।

तस्वीर में एक सड़क दिख रहा है जिसके बीच में एक बड़ा पेड़ है।

सड़क पर एक कार भी नजर आ रही है और उसके अपोजिट साइड पर कई फूड स्टॉल्स लगे हुए है।

सड़क के दोनों तरफ कुछ बिल्डिंग्स और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इसे एक जंगल और एक झील नजर आ रही है लगता है ये महिलाएं किसी रिचुअल या पूजा के लिए यहां आए हैं।

पानी के अंदर की जाएगी पूरा दृश्य प्राकृतिक और पवित्र माहौल का लगता है।

इस तस्वीर में एक आदमी खड़ा है जो सफेद टी शर्ट पहने हुई है जिसमें हल्का नीला प्रिंट है।

जैसे आम लोकल जनरल स्टोर में मिलते है।

चर्च के बाहर लोगों का एक समूह इकट्ठा है जो शायद किसी सर्विस या इवेंट में शामिल हैं।

एक व्यक्ति जिसका चेहरा ब्लर किया गया है एक्टिव वे मे दिखाई दे रहे है।

आगे एक लड़का है जो नीला टी शर्ट पहना है और पीछे एक लड़की है जिसने कुर्ती पहनी हुई है।

दोनों राइड का मजा ले रहे हैं पूरे पार्क में लोग हर तरफ दिख रहे हैं और माहौल को इंजॉय कर रहे हैं।

कमरे में रोशनी के लिए लाइट जल रही है।

इस तस्वीर में एक खूबसूरत रिजॉर्ट दिखाई दे रहा है।

महिलाएं पवित्र दृश्य के साथ इस पूजा में भाग ले रही हैं।

यहां बहुत सारी किताबे अलमारीयो में लगी हुई है।

कुर्सियां और सोफा भी रखें हैं जहां लोग बैठकर पढ़ सकते हैं।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेन या कैफे का अंदर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट या कैफे का अंदर दिखाई दे रहा है।

जो सेलिब्रेशन के लिए सजाया गया है बाय तरफ एक स्टे केस है जिसमें रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हैं।

बीच में रेनबो कलर्स की एक बड़ा बलून आर्ट है जिसमें हैप्पी बर्डे लिखा है।